पुराने काल के समय में जो भी मूर्ति या जो वस्तु जो मिलथे ओला संभाल के रखल जाथे।

एहा एक ब्यूटी पार्लर हे एमा--

ए जगह घुमने लायक बेस्ट है यह जगह में आप मन जा सकत हव ।

ये जगह में आप जा सकत --

यहाँ पे छात्रक द्वारा बहुत ही अच्छा प्रस्तुति देहल जात है।